ब्लैक कलर के शूज ब्लैक कलर का पेंट व्हाइट कलर की टी शर्ट व्हाईट माक्स पेहैन रख --

नीचे ग्रीन कलर की कालिन बिछी हुई है तीन महिलाएं नृत्य कर रही है जो कि घुटनों के बाल बैठी हुई है इनकी बीच वाली महिला का ड्रेस का कलर ब्लू एंड पिंक हैं।

यह एक तीन मंजिल बिलिंग है जिसका कलर वाईट है मेन गेट का कलर ब्लेक है गेट के बहार एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसकी टीशर्ट का कलर रेड है।

पंडाल दिख रहा है पंडाल में बहुत सारे लोग महिलाये गरबाये गरबा करते हुए दिख रहे हैं।

बाजू में जीना है पीछे एक पेड़ लगा हुआ है और आसमान दिख रहा है ब्लू एंड वाइट कलर --

और बहुत सारे पेड़ लगे हुए है और जिसमे चेक्स टाइप की डिज़ाइन बनी हुई है और वहा पर गे-मेन गेट बहुत सारे लोग खड़े--

लगी हुयी है बाजू में एक छोटी बिलिंग है जिसमे दो शटर निकली हुयी है पीछे पेड़ पोधे लगे हुए है जिनका कलर ग्रीन है पीछे खुला आसमान दिख रहा है।

यह एक माकन दिख रहा है जिसमे आगे के खपड़े छाय हुए है दो खभे दिख रही है निचे स्टूल रखा दिख रहा है बाजु में इटे है और कचरा पड़ा हुआ है ।

जंगल है बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है जिन का कलर ग्रीन है और आसमान दिख रहा है जिनपे सफ़ेद घटाएं छाई हुई है।

यह एक बिल्डिग की छत है जिसमे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए है और तिरंगा भी लगा हुआ --

कुछ सूखे कुछ गिल्ले और उन पेड़ों की झाड़ियों के बीच में आसमान दिख रहा है।

बोर्ड है बोर्ड में चार्जर लगा है --

यह एक फॅमिली गिफ्ट हाउस एड केक स्टोर है जिसमें बहुत सार समान रखा हुआ दिख रहा है और उसमें ब्लू कलर का बोर्ड लगा है एक--